दिखाई दे रहा है जो देखने में सुंदर लग रहा है।

मैं यहां पे बहोत सारे लोग--

ऐं भिक्स है कॉम्प्लान है और इलेक्ट्रॉल है बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा --